अंदर दीवाले हैं जो ग्रीन कलर की है और यहाँ पर अंदर में व्यक्ति की दिखाई दे रहा है जो एक चबूतरी में खड़ा हुआ है।

यहाँ पर कालीन बिछी हुई है यह समापन समारोह का दृश्य है।

व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए है इसमे महिलाएं भी शामिल है यहाँ पर विधि महाविद्दयालय रायगढ़ लिखा हुआ है।

आगे में यहाँ पर पंपलेट लगा हुआ है ऊपर में झंडा लगा हुआ है।

--है सामने में होर्डिंग्स भी लगी हुई है।

पोम्प्लेट लगा हुआ है ठेले में और पीछे की और पूरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं।